यहां पर गाड़ियों की सर्विस की जाती है यहां कुछ लोग एकत्रित नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर एक शॉप नजर आ रहीं हैं जिसका नाम जमना विलास गेस्ट हाउस --

यहां पर बैठने के लिए कुर्सियां भी दिखाई दे रही--

यह एक गाड़ियों की एलॉय व्हील्स की श्रृंखला दिखाई दे रही --

बहुत ही आकर्षक दिख रही है।

इंग्लिश स्टेशन से कुछ लोग बाहर--

यहां पर एक झंडी भी दिखाई दे रही है बाहर कुछ व्यक्ति भी नजर --

यहां पर एक राजस्थान आवासन मंडल का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यह बिल्डिंग एक अध्यापकों और छात्रों की बिल्डिंग है।

यहां एक महिला लाल कलर के कपड़े पहनी नजर आ रही --

यहां पर मॉलों से सुसज्जित--